यहाँ पर एक खुल्ली जगह है जिसमे तालाब टाइप में कुछ पानी भरा हुआ है पानी हरा दिखाई दे रहा है पानी के अगल बगल--

यहाँ पर एक भवन दिखाई दे रहा है जो की काफी बड़ा भवन है यहाँ एक जे.पी.सी की सूँढ भी दिखाई दे रही है नीचे कूछ पत्थर भी पड़े हुए हैं।

इस जगह पर कुछ बेट रखे हुए हैं।